पीछे डी.न डांस नेशन लिखा हुआ है और इसमें लाइटस लगी हुई है और कर्टन लगा हुआ है और ऊपर ए_सी भी लगी हुई है।

इस दुकान का नाम करीम नगर डेरी डिपार्टमेंट डेरी पारलर है।

इस फोटो में एक कैफ़े के बाहर का दृश्य दिखाया जा रहा है इस कैफ़े का नाम द सिटी कैफ़े है और इस कैफ़े के बाहर एक आदमी --

और आसपास बोहोत सारी चीज़ें रखी हई हैं खाने पीने की और फ्रीज़ के अंदर बोहोत सारी कोल्डड्रिंक्स रखी हुई हैं।

इस फोटो मे एक शादी का स्टेज दिखाया जा रहा है। इस स्टेज पर एक दूल्हा खाड़ा हुआ दिख रहा है और एक आदमी भी खाड़ा हुआ दिखाई दे रहा --